एक पुराना सा आ ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज के अंदर--

और उन तारो के बीच मे सफ़ेद अ- पाइप दिख रहे है। और कुच्छ रद्दी कागज पड़े है।

और उस दुकान मे एक स्टॉल ऑरेंज कलर का दिख रहा है।

यहा एक छोटा ऑफिस दिखाई दे रहा है। जिनकी कूर्सीयोपर नीला पेंट किया हुआ है।

और उसकी छत पर ब्लॅक कलर का पंखा अ दिख रहा है और दूर अल्मारियोमे कुच्छ पानी की बोटल रखी है।

टेकटर का अ कलर ब्लू है। और टेकटर के पिछे लकड़ी का कुछ दिख रहा है।

कुछ मरे ए हुए गीलोंडे एक पन्नी मे पड़े है हुए है।

कमरे मे सफ़ेद टाइल्स लगी हुई है। उन टाइल्सो के उपर सफ़ेद-सफ़ेद कुछ कागज रखे हुए है।

एक सड़क दिखाई दे रही है। उस रोड पर एक बड़ासा एरोप्लेन न दिख रहा है। उस एरोप्लेन --

फूलों की दुकान दिख रही है। यहा पे बहुत सारे अलग अलग रंगों के फूल दिख रहे है।

एक पानी की नदी दिख रही है उसमे बहुत से पत्थर और चट्टानें ए रखी हुई है। वहा कही कही पर--

फूल दिख रहे है। और सफ़ेद और लाल फूलों की बहुत सारी मालाये है रखी हुई है।

एक वेक्ती का हात दिखाई दे रहा है। उसके हात मे एक कच्चा अमरूत रखा हुआ है। उसके अगल बगल बोहत से पौधे लगे--

आ हेलमेट रखे हुए है बाईको से थोड़ासा दूर एक पानी का तलाव है तलाव के बगल मे पोधे लगे हुए है।

उन सिडियो के अगल बगल लोही की रेलिंग अ बनी हुईई ई ई ये है और उनके उपर चद्दर की छत है।